बिल्डिंग में बहोत बड़ा बैनर लगा हुआ है जिसमें एस_आई_टी_एस लिखा हुआ है।

इस कमरे में बहुत सारे टेबल चेयर लगे हुए हैं।

हॉल मे बहोत सारे मनुष्य लाल रंग के चेयर पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

ये एक दुकान की छवि है।

मैं हमें एक मनुष्य बैठा हुआ नजर आ रहा है।

एक सामने बहोत सारे डिब्बों में चॉकलेट और सामान रखे हुए हैं।

टेबल और चेयर भी दिख रहा है।

इसमें हमें दो चेयर दिखाई दे रहे हैं जिनका रंग लाल और नीला है।

खाने में एक हरे रंग का चटनी दिख रहा--

उसकी गोदी में एक बच्चा भी है।

इसमें हमें हमारे राइट साइड में बहोत सारे खिलौने एक लाइन में रखी हुई दिख रही है।

इसमें हमें बहुत सारे पंखे और लाइट भी लगी हुई दिखाई दे रही है ।

एक बहोत बड़ा तालाब भी दिखाई दे रहा है।

में एक पीले रंग का पाइप पी रखा हुआ है।

ये एक इमारत की छवि है।

दो वाहन भी दिख रहे हैं जिसमें से एक मोटर साइकिल है और एक रिक्शा है।

इस छवि में हमें लाल रंग का मंदिर दिख रहा है।

मंदिर के ठीक बाहर एक मनुष्य भी दिख रहा है।

पेड़ के आमने सामने बहोत सारे फूलों का भी पेड़ है।

इस छवि में हमें पीले और लाल रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

मकान के ठीक सामने एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है।

मंदिर के आसपास बहुत सारे हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

के सामने एक कपड़ा भी रखा हुआ है।

बहुत सारे जूते भी दिख रहे हैं।

कॉलेज के बाहर बहोत सारे वाहन भी दिखाई दे रहे है।

इस छवि में हमे बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग नजर आ रहे हैं।

एक सामने वाले पेड़ के सामने बहुत सारे तार के पोल भी हैं।

इसमें हमें बहुत सारी वाहन और मनुष्य दिख रहे हैं।

एक सामने एक लेडिस चलती हुई नजर आ रही है।

इस रूम में एक लाइट भी लगी हुई है।

बैनर में प्रोविंस कॉलेज लिखा हुआ है।